एक पेड़ दिख रहा है ऊपर बलकोनी में मुझे एक औरत है और ऊपर एक बैनर है उसका कुछ कुछ लिखा --

घर है एक लड़का एक चेयर का ऊपर बैठा हुआ है। सब।

यहाँ पे बहुत बड़ा बेंच है। कुछ लड़का काम कर रहा है। बहुत सारा लड़का है और एक बड़ा घर है प्रोजेक्ट कर रहा है।

यहाँ पे एक दुकान है जिसमें बहोत सारा सामान है। बहोत सामान है।

यहाँ पे बहुत बड़ा जमीन दिख रहा है इसके ऊपर बहुत औरतें है बैठा हुआ है कुछ आदमी खड़ा हुआ है पीछे बहुत पेड़ दिख रहा है पेड़ में पत्ते हैं।

अभी भी एक मंडप सजा हुआ है।